ट्रक के बराबर में पेड़ है बड़े वाला पाइप है।

चारों ओर की बाउंड्री हो रही है उपर पेड़ ये पौधे खड़े हैं।

ये पलोट हैं पेड़ पौधे खड़े हैं जन--

शीशे लगे हुए हैं चूड़ी लग चूड़ी धरी हुई है।

उसके बराबर में गद्दे पड़े हैं।

पर जिम का करने के पट्टे रखे हुए हैं और रबड़ भी है मंदिर है।

हरी पट्टी मैट मैट हरी पट्टी लगी हुई है।

भगवान जी की पूजा कर रहे हैं बहोत सारे भगत हैं और भगतनी भी है।

और मट्टी के बर्तन भी रखे हुए हैं और ये भगत रहे हैं।

गमले रखे हैं झूमर लग रहा है।

कपड़ों के शोरूम है क खन्ने में बहोत सारे कपड़े रखे हैं।

बंदूक है खिलौने की टाइप की बहोत सारी डिब्बे में गाड़ी रखी हुई हैं।

और तार खींच रहे हैं लाइट लाइट के तार खींच रहे हैं दुकान है।

यहां स्कूटी भी खड़ी हुई है मोटरसाइकिल भी हैं बहुत सारी मोटरसाइकिल हैं।

यह एक रेंजर साइकल की दुकान है यहां छोटे बच्चों की साइकल रखी--

टिफन रखा है प्लास्टिक का सामान रखा है स्टूल रखा है मेज है।

बहुत सारे पेड़ है पेड़ो पेड़ का बाग है ट्वेल लग रही है ड्रम रखा है।

नौ दस जने वॉलीबॉल खेल रहे हैं पर दो कैप्टन बैठे हुए हैं नौ दस जने वॉलीबॉल खेल रहे हैं।

एक एक खिलाड़ी ने बॉल उछाल रखी है बैट नेट लग रहा है।